ये रेल की पटरी है दो यहाँ पर --

मस्जिद है | मस्जिद के अंदर एक पेड़ लगा हुआ है | बड़ा टावर लगा हुआ है।

की बीवियां है। यहाँ पर बहुत सारी गोपियाँ है नकली पेड़ हैं और बहुत सारी जन बहुत सारे स्टेचू बने हुए हैं।

एक ब्लू आसमानी कलर का है एक व्हाइट कलर का है अलग-अलग कलर के डब्बे हैं ।